हउए प्लाई के ऊपर सब छड़ बिछाए के बाटे बाटे।

यहाँ पे बहुत बड़ा एलिफैन्ट है और हेलिफैन्ट का --

बोहोत बड़ा-बड़ा दांत दिख रहा है और आँख दिख रहा है। एक पैर उठाया हुआ है।

और यहां पर सीढ़ी बना हुआ है ऊपर जाने के --

फूल दिख रहे हैं। खंभे दिख रहे हैं। लाइट के दोनों तरफ --

और यहां पे भी लेकिन व्हाइट दिख रहा है औ --

बाइक खड़ा हुआ है। ब्लू कलर का शर्ट पहन के आदमी खड़ा हुआ है। और एक आदमी अंदर की तरफ जा रहा है।

बोहोत लोग छड़ वगैरह सब बना हुआ है और यहाँ पे भी --

ऐसा लग रहा है पानी में नहाने जा रहे हैं। यहाँ पे पानी भी दिख रहा है।

इहा पे आंगनबाड़ी का दिख रहा हैं।

यहां पर बोहोत बड़ा पहाड़ है। पहाड़ के नीचे बोहोत बड़ा सुरंग बना हुआ है। जिसके नीचे --

एक लोग खड़ा है रेड कलर का टी-शर्ट पहनके अंधेरा --

बहुत खूबसूरत जैकेट पहने हुए हैं एक येल्लो कलर हैं और एक --

पत्थर पे नंबर लिखा हुआ है कुछ और --

थोड़ा सा फेस दिख रहा है। एक पूरा हाथ निकाल के हंस के बात कर रहा है और एक --

है और लिखा है। टोम टोम लिखा हुआ है और --

और यहां पर बोहोत सब आदमी ही आदमी दिख रहे हैं। सब तार गया है लाइन का और ऊपर --

और तीन लेडीज खड़ी हुई है। एक लेडीज बहोत लंबी है और एक --

और इधर एक आदमी का थोड़ा-सा फेस दिख रहा है और सब बाहर का दिख रहा है।

छ लाइट से जल रहीं हैं। लाइट बहुत दूर तक प्रकाश कर रहा है।